खड़ी हैं और किसी गाड़ी में सामान भी रखा गया हैं।

दुकान जोकि ए.सी. --

छोटी छोटी बोहोत ही सुन्दर लग रही है देखने में।

बच्चों के खेलने का जगह हैं यहाँ पर एक --

रंग के है विज्ञान के और भी बहुत ही अलग अलग तरह के किताबें हैं यहाँ पर जो अच्छे लग रहे हैं देख के।